यहां पे बड़ा सा कुर्सी दिखाई दे रहा है जो उस लेट भी सकता है और यहां पे कुछ मशीन दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक मोटरसाइकिल दिखाई दे रहा है औ वहां पर कार दिखाई दे रहा है यहां पर एक वाइट कलर का घर दिखाई दे रहा है यहां पर वे घर दिखाई दे रहा उस साइड --

घर दिखाई दे रहा है जिसपे अलबेस्टर रखा हुआ है बहुत सारे खिड़की से दिखाई दे रहा है छोटे छोटे यहां पे एक गाड़ी बड़ा कार लगा हुआ है कार में--